दीवार पर पोस्टर भी लगे हुए--

इस पिक्चर में सामने अलमारी में बहुत सारे छे--

इस खेत में बहुत सारे छोटे छोटे--

इस पिक्चर में सामने एक घाट दिखाई दे रही है।